इसमें जो है साइकिल से बने हुए जो हैं गाड़ी चोटी पर --

यहां पे एक शख्स का पांव नजर आ रहा है जिसने--

और गाड़ी का नाम है फूजी कार वर्कशॉप ।

इमारत दिखाई गई है उस इमारत के आगे जो है सब्ज रंग के बड़े-बड़े दरख़्त लगे हुएं --